यह सैलून का फोटो है।

--यह स्कूल प्रवेश करते हुए बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहें हैं।

यहा सामने संगीत नाट्य करते हुए एक व्यक्ति नजर आ रहा है उसका एक हाथ ऊपर है ए एक हाथ नीचे है

बहुत सारे लड़के है और तीन लड़की दिखाई दे रही है ये लोग पोस्टर पकड़ के खड़े हुए है ।

यह व्यक्ति एक लड़की को मेडल देते हुए सामने नज़र आ रही है।

और बहोत सारे लड़के भी खड़े हुए है इसके पीछे बोर्ड लगा हुआ है।

यह सामने बहोत ही बड़े स्टेज सामने दिखाई दे रहा है इसमें कोई कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत सारे--